ये ग्राउंड है जहां गोल - गोल सर्कल में पेड़ों की कटिंग की हुई है जिसके अंदर भी बहुत अच्छा खुबसूरत से पेड़ है नीचे हरी-हरी घास है।

बड़ा मैदान है जहाँ पे बोहोत हरी घास लगी हुई है अंदर जाने के लिए बोहोत बड़ी बिल्डिंग है जो जहाँ पे बोहोत सारे व्हाइट कलर के बिल्डिंग है जो के दो मंजिल है।

अ आसपास बहुत सारे कलरफुल है साइड से वेट्स रखे हुए--

हॉल के अंदर डेकोरेशन है पूरा सफेद कलर का हॉल है जिसके अंदर हरी लाल नीली पिली डेकोरेशन है।

जिम के बहुत सारे इक्विप्मेंन्ट्स रखे हैं वेट्स रखे हैं अ जिम में बहुत सारी मशीनें रखी हैं नीचे हरे मैट्स बिछे हुए हैं।

बोर्ड का कलर नीला है सफेद कलर से राजेंद्र मेडिकल हॉल लिखा है। लाल कलर के एरो से अंदर जाने के लिए निशान बन--

एक औरत है लाल साड़ी पहनी हुई है जो की अंदर जा रही है| अ बिल्डिंग के ऊपर दो-चार लड़के खड़े हैं वहाँ पे लाइटे लगी हुई है आस-पास पेड़-पौधे--

फोटो है टेबुल चेयर लगी हुई है अ -टेबलस पे छोटे-छोटे टेबल फेन लगे सॉस की बॉटल्स रखी हुई है पेपर और ब्लैक पेपर की बॉटल्स रखी हुई है टिशू नैपकिन्स रखे हुए है।

ये एक जिम है जहां लोग एक्सरसाइज कर रहा है पानी की बोतल रखी है एक हरी मेट रखी है ऊपर दो-तीन टेबल फैन है ऊपर ट्यूब लाइट्स लगी है सामने कांच लगे हुए है।

अंदर एक हरे कलर का बिल्डिंग बनी हुई है ऊपर एक आदमी जा रहा है जिसके हाथ में एक बच्चे का हाथ थमा हुआ है।

डेकोरेशन का बहुत ही खूबसूरत सा सामान है कुछ टेबल क्लाक कुछ कैंडल लाइट बहुत सारे होम डेकोर का समान है एक लड़की खड़ी हुई है ऊपर से वाइट कलर की ऊपर पेंट है।

जो की लाल दरवाजे की उपर रखा है दीवार का कलर सफेद है ऊपर हरे पेड़-पौधे लगे हैं जो कि दिख रहे है ।